लागे छै मशीन वाला नही आएगा क्या इसमे पिज्जा तिज़्जा सब मिलता है कोई रेस्टोरेंट टाइप में लग रहा है यहां कॉफी और रानी सामान भी मिलता है।

और ऊपर आसमान है पहाड़ हैं चारों तरफ हरियाली है सड़क है।

ये किसी सरस्वती पूजा की ली गई तस्वीर है।